ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है। बिल्डिंग के ऊपर कांच लगे हुए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे नीचे काफी ज्यादा नयी-नयी गाडी खड़ी --

एक इंसान बाइक भी सही कर रहा है जोकि उसमें स्टेज पे लगा के बाइक खड़ी करके उसपे खड़ा हुआ हैं। बाइक को चेक कर रहा हैं बाइक में क्या प्रॉब्लम है। पंखे लगे हुए हैं। लाइट लगा हुआ हैं। नीचे फर्श हैं।